रेड वाला पुल दिखाई दे रहा है साथ में हमें व्हाइट कलर भी दिखाई--

येलो कलर का हमें यहां पर लाइट दिख रहा है और साथ में वाइट कलर का भी हमें यहां पेंट दिख रहा --

कुछ फूड दिखाई दे रहा है। जिसमें की रोटी सब्जी--

दो बोटल्स दिखाई दे रहीं हैं जिसका कलर हमें ग्रीन --

इस फोटो में हमें एक वाइट कलर की स्कूटी नजर आ रही है शाय--

बोर्ड दिख रहा है जोकि हमे पीले कलर का जिसमें की अमृत डब्बा लिखा हुआ है अमृत ढाबा लिखा हुआ है साथ में यहां पर एक वाइट --

ब्लैक कलर की यहां पर हमें कुछ-कुछ कुर्सिया भी दिखाई दे रही है। ब्राउन कलर की चेयर्स हैं और साथ में--

बड़ी सी स्टेयर लगी हुई है साथ में येलो कलर की।

चेयर भी यहां पर हमे लगी हुई दिख रही है कुछ व्यक्ति यहां पर समान की खीरीदारी कर रहे हैं।

मंदिर में हनुमान मंदिर जाप लिखा हुआ--

पेड़ पौधे भी यहां दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पड़े हुए हैं और कुछ फ्रेमें है जिसके अंदर तस्वीरें--